वे कोई ट्रेडर्स है। लेकिन उस ट्रेडर्स का वो लोगो वो छीप चुका है। जिससे वह नहीं दिख रहा है वो केवल और ये एक में भी गांव का आसपास का सीन नजर आ रहा है। जहां पर सीम का वो सीम का फसल भी लगी हुई --

इस पिक्चर मे बहोत सारी चीज़े है लेकिन मेन प्रकार की एक एस_बी_आई बैंक का बिल्डिंग है.

यह पहले इम्प्रेसन में किला का फोटो लग रहा है.

इसमें लग रहा है कि ये डॉक्टर के डॉ अअ डॉक्टर के क्लीनिक के बाहर है क्यूंकि यहां पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है।

यह एक गोदरेज है जो फर्नीचर है लड़की का बना हुआ है इसमे सीसा भी लगा हुआ है और बहोत --

यह एक तरह का गोडाउन हे जहापे नये पुराने टायर पड़े हुए हे.

और उप्पर भिन भिन प्रकार की लरिया लगाई हुई है.

और एक बड़ी सी सोफा भी है जिसपे अ वहां पर बैठके कार्यक्रम होंगे.

ये एक दुकान है जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क में भी किया जाता है कंस्ट्रक्शन ठेका लिया जाता है जिसका नाम राज कंस्ट्रक्शन डेवलपर है।

साइड में एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है और उसके साइड में दो लोग हैं एक वहां का मालिक और दूसरा शॉपकीपर लग रहा है पीछे की तरफ खिड़की है.

दो दुकान तो बांग-बांग-बे-बे- बेंगर सीमेंट की है और एक यहां पर शुक्ला ट्रेडर्स है जिसका खुद का ट्रेडर्स का दुकान होगा शायद चावल का एक ट्रक है जिसमें से चावल यह सब उत्तर--

वह जिससे पूरे बिल्डिंग की बिजली कंट्रोल हो सकती है.

और अलग अलग कि रेक है और रेको में कांच के शीशे भी लगे हुए हैं.